आसमान में वाइट कलर का बादल भी दिखाई दे रहा है।

मूर्ति में रंग बिरंग का लाइट जल रहा है।

पार्क में स्लिप करने वाला भी बनाया हुआ है।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

बैलून का कलर ब्लू और वाइट कलर का है।

दुकान का कलर हरा रंग से पेंट किया हुआ है।

दूकान के बाहर का कस्टल लिखा हुआ है।

स्टेज में बहुत सारा रंग बिरंग का लाइट जल रहा है।

बहुत सारा पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है।

आसमान में वाइट कलर का बादल भी दिखाई दे रहा है।

एक टेबल में कुत्ता रखा हुआ है।

घर का रंग व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।